ये एक कैफ़े है जहा पर बाहर की साईड एक टेबल और स्टूल रखे हुए है बैठने के लिए यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है ऊपर और अंदर जाने के दरवाजा है|

साइड बलब टंगे हुए है और यहाँ ओर पिक्चर्स लगी निचे दरवाजे के साइड में--

साईकिल है और काफी सारी दुकान में पोस्टरस लगी हुई है वाइट कलर से कुछ लिखा हुआ है और अंदर में काफी सारी लोग है सामान है और

यहां पर एक चेयर है जिसका कलर ब्लै एंड वाइट है और इस दुकान में काफी सार समान है इसमें एक पंखा भी लगा हुआ है।

यहां पर एक सब्जियों का स्टोर है सब्जी के स्टोर के ऊपर एक ए_सी लगी हुई है जिसका कलर वाइट है यहां पर सब्जियों के कुछ पोस्टर लगे हुए है।

यहाँ पर कुछ कुरकुरे रखे हुए है और उनका कलर येलो ऑरेंज वाइट है ऊपर ए_सी लगी हुई है नीचे कुछ मशीन है|

यह एक शॉप है जहां पर कई सारी गाड़ियां खड़ी हुई है जिनमें से एक फोर व्हीलर का रंग रेड और व्हाइट और ब्लैक और भी कलर की गाड़ियां हैं|